में एक ऑटो है। ऑटो में दो लोग दिख रहा है।

छे ब्रिज के बीच में कुछ बस ऑटो टो --

सुंदर है जलासय की पार में --

बड़ा है इधर पे आच्छा क्वालिटी की --

इधर पे एक सैलून दिख रहा है सामने एक लड़ --

काबर की मेनू दिख रहा है मेनू बहुत --

इधर पे एक एच.डी.ऍफ़.सी. बेंक की एक --

इधर पे एक पार्क दिख रहा है। पार्क की चार-पाँच --

इधर पे एक टिकट काउंटर दिख रहा है। टिकट --

इधर आच्छा क्वाय्लिटी की काप मिलता है। का की डिजाइन भी बहोत --

में बोहोत सारे हैन्डमेड पोडक --

ब्राउन -सा दिख रहा है। इस गाड़ी सर्विस हो रहा है पास में कुछ --

दुकान में ताज़ा फूल मिलती है। सामने --

शोरूम है। शोरूम के अंदर बहोत सारी --